बाइक की भी बाइक वगैरा है। अ बहोत अच्छा दिख रहा है बाइक बाइक है और --

ये स्कूल भी है और काफी स्कूल ये है डगे हुए है। बिल्डिंग --

बोहोत अच्छी चल रहा है। पानी में चलता है नाव ठो। दो आदमी बैठा हुआ है। मछली पकड़ रहा है। बक्सा वहां रखे हुए है। मछली --

देखने में बहोत अच्छा दिख रहा है। काफी अच्छा दिख रहा है। बीच वगैरा है। एक खंबा भी है। दो बच्ची भी है। इधर --

कुछ कर रही है। लड़की सब प्रार्थना कर रही है।

सफेद कलर का कपड़ा पहने हुए है आ व्हाइट कलर का दुपट्टा लिए हुए है। बहोत अच्छे किये है।

बोहोत दिख रहा है। पेट्रोल पम्प में --

अंदर में कुछ मूर्ति जैसा बनाया गया है। इधर-उधर आगे तरफ --

काफी अच्छा है। खड़ा भी है। उधर बहोत सारे आदमी --

और दो-तीन आदमी खड़ा हैं।

इधर एक कंप्युटर रखा हुआ है काउन्टर पर। ए उधर भी कंप्युटर है।

अरे बैठे हैं। एक आदमी फोकस में --

रोता है बहोत सवेरे ढलाई के लिए --

आ ढलाई वलाई के लिए करेगा। ढला सिमेन्ट रखा हुआ है उधर। --

फूल में पानी पानी पार हो रहा है।

अच्छा है आहोर काफी महीन दिख रहा है। दिखने में --

कट बनाया गया है। बस का है। तालाब वगैरा लगा दिया गया है और अंदर में कुछ दिख रहा है।

डर लग रहा है। कोई दिख रहा है और सामने कुछ सामान वगैरा है।

काफी दिख रहा है के लिए --

फोटो खीच के खड़ा किया है और जो है --

बोहोत मस्त है। लाइट वगैरा लगा हुआ है। कुर्सी भी है।